वाइट कलर में भी है पीछे पीछे से जांगल टाइप में थोड़ा है क्योंकि बहुत ज्यादा वृछ लगे है यहाँ पे देख सकते हो और ये इसकी नीची एंट्री है।

और वह देखिए सब लोग खड़े है मालिक भी खड़ा है साइड में देख सकते है आप--

इस्पे एक जो मूर्ति है वो--

ये एक किला है दूर से देखने मे लग रहा है कि उसकी एंट्री है यहा से मेन गेट पे कितनी भीड़ लगी हैयहाँ पे साइड मे लोगों की।

ये एक लेक है जिस पे बोट्स खड़े हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और लेक देखिये कितनी साफ-सुथरी मेरे को लग रही है।

ये फिर से किले का ही मेरे को लग रहा है।

और देख सकते हो आप कहते हैं बसेस चार बुसेस खड़ी है। यह बस स्टैन्ड है एक।